यहाँ पर एक नदी बह रही है और उधर की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत ऊँचे ऊँचे और पहाड़ भी हैं।

और खंबा लगा है और उसके ही पीछे स्टेज बना हुआ है।

कुछ मेज पड़ी हुई हैं और चेयर पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की लकड़ी की और एक लकड़ी की मेज भी है लंबी सी और पर्दे लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर और भी बच्चे हैं यहाँ लाइटें लग रही है खिड़की है यहाँ पर बोर्ड भी है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ।

वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं अंदर काउंटर है उस पे आदमी बैठा है।

इसमें अ पानी की बोतल है वाटर कूलर है।

एक सिलेंडर रखा है एक फ्रिज भी रखा है।

एक आदमी ऊपर ही गेट पर खड़ा है।

ये एक म्यूजिक रूम है यहाँ पर हार्मोनियम रखा है उसके ऊपर माइक लगा है।

गंगा स्नान का और यहाँ पे कुछ नदी सी दिखाई दे रही है।

और सिर पर उन्होंने रेड कलर की कैप लगा रखी है।

जो अह इनके साथ चल रही हैं और बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं।

और वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं और उधर की तरफ पेड़ पौधे हैं।

और सा पेड़ भी लगे हुए हैं बहुत सारे।

ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पर स्ट्रेचर है।

एक अलमारी है और दीवारों पे यहाँ पे --

और यहाँ पर सीटों पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं।

बर्फी है पेड़े हैं रसगुल्ले हैं।

गंगा जी है और यह गंगा जी है और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और बीच में पुल बना हुआ है।

और यहां पर जो है बहोत बहोत बड़े कट्टे हैं और उसके अंदर सामान भरा जा रहा है।

तो यहां पे एक ऑटो भी खड़ा हुआ है और एक आदमी खड़ा है।

और यहाँ पर आम के पेड़ भी है दूसरी तरफ भी अ पहाड़ से बना रखे हैं और वहाँ भी अ खजूर के पेड़ लगे हुए है और आम के पेड़ भी है।

एक लॉन्ड्री लैब है और यहाँ पर जो है ये गेट है लोहे का और इस पर जो है पूरा का पूरा म बोर्ड सा बना रखा है इस पर लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक बरात चढ़ रही है और यहाँ पर बहुत सारे अ ट्रॉली टाइप की है और उसमें जो है लड़कियाँ हैं।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

और सब एक के ऊपर एक करके --

और उसके नीचे भी अ एक पंडित जी खड़े हुए हैं।

और यहाँ पे स्टैंड है उसमें वहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

एक आदमी वहां से उतरकर अंदर जा रहा है।

उसमें चैनल लगा है वो बंद है।

और वो उसे बता हँस रहे हैं और वो जो है उनकी फोटो खींच रहा है।

और ऊपर की तरफ टीन भी लगी है और यहाँ पे एक पाइप भी है जो नीचे को आ रहा है बहुत सारे पाइप हैं और यहाँ पर जो है अ कुछ पिलर से खड़े हुए हैं।